उन दुकानों पे एक आदमी जैसा चमक रहा है उसने माक्स लगाया हुआ है उसकीन माउथ पे माक्स नहीं चढ़ा हुआ है इसके नीचे थोड़ी पे माक्स है।

यहां पे एक बहोत बड़ा कमरा जैसा है उस कमरे के साइड की एक फोटो जैसी है।

उस बिल्डिंग का गेट खुला हुआ है उसके अंदर का गेट बंद है।

यहां पे सीढ़ियां हैं कुछ उसपे कुछ लिखा हुआ आर_एस लिखा हुआ है वो भी पेंसिल से।